ये एक ठे विद्यालय है। यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं और ये विद्यालय इंडिया में ट्रेडिशनल विद्यालय है। जहाँ पे हमें लगता है बोहोत सारे बच्चे पढ़ते हैं।